और घर भी है गार्डन भी है पार्क है इसमें आदमी आते-जाते रहते हैं बाइक लगा हुआ है ।

और आदमी यहाँ से नहीं आते पर वहाँ पर निकलता है टिकट है पाँच सौ का टिकट है यहाँ पे ।

हमको अच्छा लग रहा है देखने में हमको अच्छा लगता है ये सब देखने में डांस - उन्स और डांस भी करना हम चाहते हैं की बहुत अच्छा करें ।

लिखा हुआ है शेरा और कुछ ऐसे कुछ लिखा हुआ है जो हमको समझ में नहीं आ रहा आदमी लोग खा रहे है खड़ा होकर खा रहे है बहुत --

अच्छा लग रहा है ।

और यहाँ पर भी जरूर है की हवा आते-जाते रहते होंगे और बिजली का भी तार गया है ऊपर से ।

डॉक्टर अम्बेडकर का लगा हुआ है पोस्टर अब सब उसी को निहार रहे हैं और समझा रहे हैं यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा है जो समझा रहे हैं ।

चले जाएँ मॉल में मॉल में अच्छा-अच्छा पर्दा टंगा हुआ है हमको तो पसंद है तो हम तो जाएंगे कभी ।